यहाँ एक पार्क है उसके ऊपर बहुत से कलाकारी की गई है और वहाँ बहुत से आदमी हैं और बाउन--

टेंट हैं और साइड में एक टोकरी जैसा कुछ रखा हुआ हैं।

यहाँ एक रोड हैं।